यहाँ पर एक भवन बना हुआ है एक घर बना हुआ है दो टिन शेड बने हुए हैं टिन शेड में गाय बंधी हुई हैं।

सड़क दिखाई दे रही कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

एक इनवेटर दिख रहा है एक व्यक्ति दिख रहा है जोकी ऊपर खड़ा हुआ है| कुछ केले के पत्ते दिख रहे हैं जो लगे हुए हैं।